एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है आप यहां पे देख सकते हो।

आसमान दिख रहा है ये यहां पे--